बच्चे नीचे बैठे हुए बैग दिख रहें हैं कपड़े दिख रहें है नीले कपड़े पहने हुए सफेद कपड़े पहने हुए है।

आस-पास पेड़-पौधे दिख रहे है और नारियल के पेड़ दिख रहे है सामने कुछ बना हुआ इमारत दिख रही है जो पीले कलर की है।

स्‍टूल रखा हुआ है जिसपे पानी की केन रखी हुई है पिंक कलर की शटर दिख रहा है एल_इ_डी लाइट दिख रहा है।

जिसके अंदर एक हैंडल दिख रहा है की लगाने का दिख रहा है अंदर ए.टी.एम. दिख रहा है डस्टबिन दिख रहा है कागज़ दिख रहा है आस-पास दीवाल दिख रही रही है नीचे फ़र्श दिख रहा है।